इस तस्वीर में बहोत सारे बच्चे लड़कियाँ बैठी हुई हैं।

जगहो में पेड़ भी लगाए गए हैं।

सफेद बादल नजर आ रहे हैं।

सामने बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

उसके सामने बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

सामने बहोत सारे स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है।

बहुत सुन्दर सुन्दर अलग अलग आदर की फूल गये हुए हैं।

ब्लैक कलर की छाता है एक स्कूटी है।

बड़ी सी एक बैनर लगी है बैनर लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक रास्ता है उसके सामने एक दीवारें है।

सामने बहुत सारे अलग अलग चीजों की दुकानें भी लगी हुई है रास्ते में।

ये तस्वीर में एक टेलर का ओ है राजू टेलर --

सामने दो गाड़ियां हैं जो एक ब्लू कलर की है एक ल लाल कलर की है।

एक स्विच बोर्ड है जिसमें एक चार्जर लगा हुआ है।

कुर्सियां लगी हुई है जो हरे रंग की है और पीले रंग की है।

ऊपर गोल्डन कलर की लगी हुई है।

इस तस्वीर में बहुत सुंदर सा एक पाहाड़ है।

यहां सामने एक बच्चा खेल रहा है।

कोई जंगल को काट रहा है।

दो लड़कियां यह सामने बिल सामने घर है जो सफेद कलर का है।

दो बच्चे झूलना झूल रही है और बाकी सामने खेल रहे हैं।